पिक्चर में एक बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग अ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक लेडी झाड़ू देते हुए नजर आ रही है यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है एक बड़ा सा घर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक व्यक्ति सेल्फी लेता हुआ नज़र आ रहा है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है यहाँ पर दो चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक हेयर ड्रायर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में एक प्रेस की दूकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक व्यक्ति प्रेस करता हुआ नजर आ रहा है।

कुछ और लोग भी खड़े हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक एक्टिवा और कुछ बाइके खड़े नज़र आ रही है यहाँ पर एक बड़ा सा खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बाइक जाती हुई नज़र आ रही है जिस पे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो गर्ल्स स सेल्फी लेती हुई नज़र आ रही हैं।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

ए इमेज एक मस्जिद की है जहाँ पर मस्जिदों में एक क्लॉक लगी हुई नज़र आ रही है यहाँ पर मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।